और कुछ आदमी बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

डेंटिस्ट क्लीनिक हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है।